उसमे एक बीज होता है जो की काले रंग का होता है इसका स्वाद खट्टा होता है एवं अम्लीय होता है।

यहाँ पे लिखा हुआ है पढ़लो चाहें कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से फिजिक्स वाला।

ये जमीन है जहां पर घर के का समय चल रहा है ठीक है घर बनने की प्रकृति चालू है अभी।

क्या दिख रहा है ये एक लेक का व्यू है ब्लैक एंड वाइट का व्यू है इसमें एडिट किया गया है इसमें कंटेंट डाला गया है।